ये एक लोहे की फिश टाइप की बनी हुई है और सामने लोहे का खंबा है उसपे वायर लगे हुए है और दो तीन और खंभे है और एक--

यह एक सा शॉपिंग मॉल है जहां पर कुछ पैकेट रखी हुई हैं और एक एक कार्ड रखा हुआ है दलिया टाइप का जिसमे कुछ रेड कलर लगा--

रखा हुआ है और लोहे की है और इसमे इसके अंदर कुछ रखा हुआ हैं।

एक सेलून की दुकान है जहाँ पर दो चेयर रखी हुई है और कुछ शैंपू और कुछ कलर टंगे हुए हैं।

ये रोड पर लोहे का खंबा लगा हुआ है एक ब्लैक कलर की कुर्सी रखी हुई है प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई है वाइट और रेड कलर की कुछ लाइन से ऑटो खड़े हुए हैं एक अ बोर्ड लगा हुआ है।

-- जिनका कलर रेड है ग्रीन और व्हाइट है और इस नक्शे मे ऊपर ग्रीन और बीच मे व्हाइट और नीचे ग्रीन कलर है।

यहाँ कोई बैंक है जो बंद है और लोहे का शटर लगा हुआ है जो ब्लैक कलर से पूता हुआ है और एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

नीचे चार छोटे छोटे खंभे दिखाई दे रहे है ये कई प्रकार के नीचे बनाये गए है जिसके सपोर्ट से ये गिरे--

यहाँ कोई बड़ा बस स्टैंड है जहां पर बहुत सारी बसे से खड़ी हुई है जो सामने व्हाइट कलर की बस दिखाई दे रही है एक पानी की टंकी --

ये सामने बस दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर उस पे लगा हुआ है और सबसे उपर रेड कलर --

और कुछ सीसिया रखी हुई जिसमें कुछ केमिकल भरे हुए है और सामने एक डब्बा पानी पीने वाला दिखाई दे रहा। एक तराजू रखा हुआ है। ए और जिस पे नाप करके क कमे केमिकल बनाते--

और ग्रीन कलर का ही कुछ अ अ लगा हुआ है। एक व्यक्ति व्हाइट कलर की शर्ट पहन के अँगोछा डाल के कहीं जा रहा है।

अभी भी बीच बीच मे अ यलो कलर का दिखाई दे रहा हैं और ये व्यक्ति व्हाइट कलर के सर्ट पहने हुए हैं तीन बाइक खड़ी हुई हैं एक पेड़ लगा हुआ हैं।